आप इस तस्वीर में देख सकते है ये कोई पंडाल बना है और यहा पे दो ऑटो खड़े हुए है एक टिर्री ऑटो खड़ा हुआ है और यहाँ पर सादा ऑटो खड़ा हूआ है।

यहा पर बहुत सारा रश हो रहा है यहा पर बहुत सारे ऑटो नजर आ रहे है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है।

इस सलून का उद्घाटन आज ही हुआ है ऐसा लग रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है और यहा पर दो बाइके भी खड़ी हुई यहा पर हर तरफ घर ही घर नजर आ रहा है।

हम इस पिक्चर मे देख सकते है की यहा पर ऑटो खड़े हुए है। बसेस खड़ी हुई